यहां पर टेबल है टेबल के ऊपर कंप्यूटर और कीबोर्ड रखा हुआ है।

ठीक है खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहे--